यह एक स्कूल की तस्वीर है।

यहाँ पे हम देख सकते हैं की एक नदी बह रही है जिसके ऊपर एक पुल है।